मंदिर के आस-पास बहुत सारे पेड़ दिख रहे है मंदिर बहुत ऊंचाई तक बनाया हुआ है।

और ये जाली बहोत उचाई तक लगायी है खम्भे पे लगायी है यह जाली के पीछे बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे है।

पर्दा लगा हुआ है निचे वाइट कलर की ये टाइल्स लगी हुई है निचे किसी व्यक्ति ने चप्पल उतारी है।

झरना लगा हुआ है यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के कुंडिया रखी हुई है ये कुंडियों में छोटे-छोटे पेड़ लगाए गए है।

मल्टी के आस पास ग्राउंड है ग्राउंड हरी हरी घास उगी हुई है कुछ कपडे मल्टी में ग्रिल पे सुकते हुए नजर आ रहे है।

यहाँ कुछ पत्थरो की सीढ़िया है और गेट दिख रहा हैं जो की बंद नज़टर आ रहा है।

यहाँ बहुत बड़े - बड़े पहाड़ दिख रहे है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है आगे बहोत छोटे पेड़ भी दिख रहे है और यहाँ पहाड़ियों के बीच से पानी--

कुछ लेडीज लोग सामने निचे दिख रही है यहाँ लाइन से--

यहाँ काउंटर पे कुछ लड़के लोग खड़े हुए है रेड कलर की चेयर रखी हुई है।

एक पेड़ दिख रहा है यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है।

बड़ा एक केक रखा है केक के ऊपर एक कपल को बनाया गया है गुड़िया को--

यहाँ शोकेस में कुछ पार्लर का सामान रखा हुआ है ऊपर लाइटिंग भी दिख रही है येलो कलर की दीवाल है।

यहाँ अलग-अलग आलमारियाँ के खंड बने है इसमें सारे में--

कपड़े ही कपड़े रखे हुए नज़र आ रहे है।

यह एक बी _डब्लू_डी स्कूल है स्कूल के पी बैकग्राउंड में एक चार्ट लगा हुआ है यहाँ कुछ लड़के--

रेड कलर टीशर्ट भी पहन रखी इनके निचे ओरेंगे ब्लू पर्पल कलर की पट्टिया दिख रही है। पीछे--

दरवाजा दिख रहा हैं नीचे टाइल्स लगी हुई है साइड में सीलिंग फैन लगे हुए है दोनों ओर--

साइड में एक लेडीज दिख रही है मंदिर गोल्डन कलर का दिख रहा है।

यहाँ एक फलों और सब्जियों की दुकान है यहाँ पे मुझे कुछ सब्जियां दिख जैसे भाटे लौकी ककड़ी--

बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ दो बैरिकेटेर रखे हुए है एक ल खंभा है जिसपे लाइट लगा है।

यहाँ तिरंगा भी चिपका हुआ है यहाँ एक व्यक्ति ने मास्क लगाया है सामने एल_इ_डी लगी हुई है ऐ_सी दिख रही है।